हमारे यहाँ संस्कृति का कार्यकम खत्म हुआ तो जा रहे है और लोग नये-नये टेक्नोलोजी और इस सब में भर्ती होते जा रहे है जो कि पुरानी सभ्यता को हम लोग छोड़ते जा रहे है।

अच्छा है तो मज़ा भी आता है बहुत लोग खेलते है।